खाली रोड दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ बादल दिखाई दे रहे है।

जो की कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में कढ़ाई रखी हुई है जिसमें से वो सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

जिसका कलर गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है आसपास दिवारें दिखाई दे रही --

इस फोटो में सामने की तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर येल्लो कलर का दिखाई दे रहा है ।

इस फोटो में शेर की मूर्ति दिखाई दे रही है जो की एक काँच के बॉक्स के अंदर दिखाई दे --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

मंदिर में दो प्रतिमा दिखाई दे रही है तीन प्रतिमा दिखाई दे रही है जिनका कलर गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है ।

जिसमें ब्लू कलर की कपड़े पहने हुए है इसमें ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है ऊपर की तरफ चद्दर दिखाई दे रही है ।

एक आंटी दिखाई दे रही है जो माइक पर बोलती हुई दिखाई दे रही है।

एक लड़के ने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है यह तस्वीर रात की दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक खेत की दिखाई दे रही है जहाँ पर घांस लगा हुआ दिखाई दे रहा है पास में बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

चेयर पर पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो पिंक और व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं ।

जहाँ पर लड़कियों ने वाइट कलर की कपड़े और रेड कलर के चुन्नी पहनी हुई है।

नीचे की तरफ का कलर दिखाई दे रहा है रेड कलर का चर्च का।

सामने की दीवार का कलर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का एक लड़की दिखाई दे रही है।

जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए है जिसके हाथ में एक मोबाइल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ एक कार दिखाई दे रही है जो चलती हुई दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक दीवार दिखाई दे रही है जिसपे एक ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

इस फोटो में एक स्टेशनरी की फोटो दिखाई दे रही है जहाँ पर बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे --

आस-पास बहोत सारे सामान बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।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

इस फोटो में सामने की तरफ एक लड़का दिखाई दे रहा है जो स्कूटर पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है ।